लोहे की जाली लगी हुई है सामने पर्दा लगा हुआ उसपे हला कलर का--

सामने बहोत सारे छोटे छोटे झाड़ी और पेड़े दे उगे हुए हैं।

वाइट और संतरी रंग के घर पे दो टंकी धरी ऐं काली और वाइट ।

रूम का ऊपर पेंट हो रहा है सफेद कलर का।

पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे है बड़े बड़े कुछ गमले भी दिख रहे है सामने।

यह किसी बड़ा हाउस बन रहा है यहां पर--

एक बाइक खड़ी हुई है कुछ ईंट पड़ी हुई है सामने--

मेज के पास लाल कलर की कुर्सी रखी हुई है छे।

नीचे पत्थर बिछा हुआ है ऊपर से दो लाइट लगी हुई है।

और इनका चेहरा नहीं दिख रहा है।

और एक दीवार पे शीशा लगा है।

इसपे वेलकम लिखा हुया है।

ऊपर टाइल लगी हुई है काले रंग की दिन में गोल गोल लाइट लगी हुई है जो बल रही है।

लोहे की सीढ़ी लगी हुई है कुछ झूले भी लग रहे हैं।

यहां पे वो है क्रेट ध धरी हुई है लाल काली पीली।

बस गाड़ी मोटरसाइकल ऑटो कुछ ध खड़ी है यहां पे।

जहां पे बहोत सारे विंडो है कुछ में शीशे लगे हुए है कुछ खाली है।

इस बिल्डिंग पे एक वो लगी हुई है इसी और ऊपर लाइटे भी है।

और यहां पे लोहे कांच का गेट लगा है अंदर बहुत सारे आदमी भी है।

यहां पे लिखा है ऊपर एक बोर्ड लगा है वो जिस पे गाड़ी छुपी हुई है नीचे लिखा है श्री लक्ष्मी।

एक बाइक भी खड़ी हुई है सामने दो साइकिल खड़ी हुई है।

पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे है।

हमें कुछ मट्टी भी दिखाई दे रही है।

सामने कुछ विंडो दिख रही है।

यहां पे लिल्ला लिल्ला पीछे रंग होया है।

एक दो दरवाजे है और लाइटे लगी हुई है यहां पे।

पर्दे भी हैं बराबर में एक सीढ़ी धरी हुई है।

नीचे व्हाइट विल चॉकलेट रंग के टाइल लगी हुई है।

यहां पे कपड़े धरे है बहोत सारे गत्तों के उसमें--

नीचे बहुत सारे पत्थर है ऊपर एक पड़ है।

ऊपर सारे में टीनें गिरी हुई है।

एक तरफ डिब्बा धरा है छोटा सा पेड़े रंग का --

सामने एक लाइट लगी हुई है बड़ी।

नीचे स्टूल बिछ रहा है कुछ और प्लेट दिख रही है सफेद कलर की--